और यहां पे कुछ प्रोग्राम वगैरा चल रहा है नीचे बैठे हुए काफी सारे बच्चे--

और ऊपर नीला नीला आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पे देखियेगा काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है काफी सारी कुर्सियां लगी हुई है नीले गुलाबी कलर की सफेद कलर की।

ये देखिए यहां पर एक कपड़े की दुकान है कपड़े की दुकान के अंदर काफी सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं पीस है ये क्लॉथ के कपड़ों के पीस है ये --

और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग सी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर देखियेगा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां पे देखिएगा फ्रंट एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपना एग्जाम दे रहे हैं काफी सारी बेंचेज पर बैठे हुए हैं वो एक टीचर दिखाई दे रही है।

टेबल नजर आ रहे हैं कुर्सियां दिखाई दे रही है।

यहां पे देखना फ्रेंड्स एक बड़ा सा टेबल --

सड़क है सड़क पर कार चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स एक स्कूल की गैलरी दिखाई दे रही है और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

कारे खड़ी हुई है रोड पे अंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।